जेंट्स लेडीज खड़े दिखाई दे रहे हैं और एक सामने दीवार है। दीवार पे --

में पोर्शन दिखाई दे रहा है जो कि ई भरा हुआ है बीम जिसको कहते हैं --

इन डंडा फरसा बंदूक जैसी बोहोत सारे रखे हुए हैं जो ब्लैक के हैं।

एक रास्ता बना हुआ दिख रहा हैं जिसमें पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। बड़े-बड़े पेड़ भी हैं।

बहुत लम्बी सी सटक पड़ी हुई है जो पानी ही पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए यूज़ की जाती है।

और यहाँ पर बाइक गाड़ी भी खड़ी दिखाई दे रही है। कुछ व्यक्ति चल रहे आते जाते भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पर एक टीन शैड पड़ा हुआ हैं। उसपे चदर दिख रही हैं जहाँ पर लोहे की लकड़ी पाइप लगाये गए हैं।

जो हरे कलर के संतरे हैं। कुछ हरे कुछ पीले हैं और उपर रेड कलर के एप्पल रखे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक शटर के अंदर हाथी की तस्वीर दिखाई दे रही है।

और मकान के पास एक वो ब्लैक कलर की गाड़ी भी रखी दिखाई दे रही जो टू व्हीलर हैं और पेड़ पौधे दिख रहे --